फिर लेन पलंग बनाई गयी है जो कि लकड़ी के दुकान खाने के बनाई हुई दिखाई दे रही है आस पास के अंदर फ्रश दिखाई दे रहा है।

यह एक मंदिर है मंदिर के दो पीछे गाड़ी छोड़ी हुई दिखाई दे रही है मंदिर के पीछे भी एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के आगे दो बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं मं--

पास कि अगर एक कुछ रेस्टोरेंट जैसा भी दिखाई दे रहा है और कुछ बिल्डिंग के अंदर सीढ़ी भी बन--

बिल्डिंग चार मन्जिला है बिल्डिंग के वो आगे फिनिशिंग की हुई है।

यहां पर सामने एक कंप्यूटर खड़ा है कंप्यूटर के पास में मोबाइल सही करने की राड है जो मशीन में लगी हुई है।

ये मशीनें भी हैं कुछ चार्जर भी है और अनेक प्रकार के उप काम आने वाले उप--